जेसे कि अपन यहाँ पर देख पा रहें हैं। यहाँ पर हमे यह एक अ --

नीले कलर की रेलिंग लगी हुई है और हरे कलर का घर दिख पा रहा है।

देख पा रहें हैं यहाँ पर हमे दो हरे कलर के डस्टमीन भी रखे हुए है। हम देख --

ह हम्म बुक नोट बुक की शॉप देख पा रही है और पीछे बहुत सारी नोट बुक्स रखी हुई हैं हम यहाँ पर --